सामने की ओर पहाड़ भी है जो बहुत बिंदास लग रहा है और क्या ही बोलू वो एक नंबर पहाड़ है।

ये किसी जंगल साइड के रास्ते का फोटो है जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है।

सामने मुझे हिरन दिखाई दे रही है उनके सींग भी दिखाई दे रहे है।

सामने यूं बाउंड्री भी दिखाई दे रही है हरे- भरे पेड़ -पौधे भी दिखाई दे रहे है और ये कुछ घास वगैरह भी डला दिखाई दे रहा हैं।

ई गोदरेज का इमेज लग रहा है उसके बगल में एक जग भी रखा हुआ है।

इसमे जो है मुझे बहुत ही बढ़िया चीज लग रहा है बहुत ही शानदार ये साम सामने ग्राउन्ड पड़ा है और ये लाइट भी लगी हुई है बड़ी सी वह सामने बड़ी - बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है सामने आसमान भी दिख रहा है नीला - नीला --